बहोत सारे लड़के आए हुए हैं यह स्विमिंग पूल बहोत ही अच्छा है स्विमिंग पूल में सभी स्विमिंग करने के लिए आते हैं यहां पे सभी एन्जॉय करते हैं।

यह एक मैदान है। यह मैदान में लड़के फुटबॉल खेलने के लिए आए हुए है। यह मैदान में बोहोत सारे लड़के फुटबॉल खेल रहे है। यह मैदान में बोहोत सारे हरे-भरे घास है बोहोत पेड़-पौधे लगे हुए है। यह मैदान बोहोत ही सुंदर --

गेंदे फूल है गुलाब फूल है तरह तरह के फूल यहाँ पे बेचने के लिए आदमी आये हुए है फूल हमलोग घरो में लगाते --

लाइट हाउस है। यहाँ पे लाइट मिलती है। यह सिलिंडर के लाइट के यहाँ पे मलते है।

एक होटल है यह होटल में ठहरने के लिए रहने के लिए सारी सुविधा इस होटल में दी गई है इस होटल को हम लोग फंक्शन में --

एक दुकान है यह दुकान में सभी कपड़ो की धुलाई-रंगाई साड़ी पोलिशिंग लेदर जैकेट पोलिश सूट स्टीम प्रेस आधुनिक मशीनों के द्वारा होती है ।

यहाँ पर सभी यात्री बस से सफ़र करने यहाँ के लिए आते आये हुए हैं सभी लोग आते हैं | यह रोड पर बस खड़ी है यह बस बहुत बड़ी है।

यह दुकान है यह दुकान में जरुरत की सारी चीजें मिस इस दुकान में मिलती है यह दुकान में कुरकुरे बिस्कुट चॉक्लेट --